यहां मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक कमरा दि--

इस फोटो में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

यहां मुझे एक लाइट दिखाइ दे रही--